ऊपर आसमान है आसमान का जो कलर है वो सफ़ेद है काफी सारी धूल-मिट्टी है मैदान है ।

चार एक मेटाबॉल है जो के हलके क्रीम कलर की है ऊपर आसमा है आसमान का कलर नीला है एक बिजली का खम्बा है।